यहाँ झोपड़ियां दिखाई गई है झोपड़ियां सफ़ेद रंग की है व झोपड़ियों की छत बास की छप्पर की बनी हुई है यहाँ कुछ --

सामने एक धर्मिक स्थल का मंदिर दिखाया गया है जो की सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है।

यहाँ एक कपड़ो की दुकान दिखाई गयी है जिसमे कपड़े डिब्बे में रखे हुए है यहाँ सफ़ेद रंग की मेज के ऊपर शीशा लगाया हुआ है यहाँ --